हर तरफ से ब्लू कलर का तीन है और लाल है और हमें सफ़ेद का दिखाई दे रहा है।

और गेट है देखने में में भी भी सुंदर है।

यहां पर ए कोई तालाब है और --

यहाँ पर एक तालाब है उसमे पेड़ पौधा है और --

जो एक डीजे का गाड़ी है उसमे माइक ओइक लगा हुआ है लाल कलर का पीला कलर का --

बिस्तर में भी है और काम कर रहें हैं।

बड़ा मैदान भी है उसपे चर्खा भी है लड़का भी है |

कोई विशेष बात बता रहा है जा की पूरा --

खूब है और जैसे की पर्दा भी और गेट --

कोई फंक्शन है जेंट्स और लेडीज सब जमा हुआ है।

फूल-पत्तियाँ भी लगा हुआ है। बहुत बड़ी --

एक तरफ बहोत सारी तार हैं।

यहाँ पर एक दुकान है जहां --